ये आप सामने देख रहे है सुजुकी की एक कार खड़ी है।

जो कि जिसका रंग मैंरून रंग का है।